सामने एक बड़ा सा रूम है जिसके पीछे की दीवार में एक जिसु का प्लस साइन भी है और सामने कुछ लोग बैठा हुआ नजर आ रहा है साइड में एक महिला भक्ति का देते हुए नजर आ रहा है।

दुकान के बाहर कुछ लोग खड़ा हुआ नजर आ रहा है दुकान के छत में एक लाइट का पोस्टर भी टंगा हुआ--

--दिन का टाइम है बहुत ही धूप लग रहा है।